बंदा बैठा हुआ है स्पेक्स लगाकर गाड़ी वगैरह अह गाड़ी वगैरह पीछे है मतलब है नहीं कॉपी वगैरह है और वॉलपेपर दीवार पर टंगी हुई है।

एक मैडम काउंटर पे वो खड़ी हुई है और डांस काफी अच्छा चल रहा है।

स्विमिंग एरिया लग रहा हैं और घूमने के लिए काफी अच्छी जगह लग रही हैं पेड़ वगैरा काउंटर वगैरा सब बना हुआ हैं।

और घूमने के लिए अच्छी जगह लग रही है देखने को भी काफी अच्छा लग रहा है।

ऊपर तालिया लगी हुई है मौसम काफी साफ है पेड़ वैगैरा बने हुए है धूप काफी है।

शाम की फोटो है बगल में एक और शॉप है।

और टेबल वगेरा लगा हुआ है।

और फीमेल जनरल वार्ड है ये--

घूमने वाला प्लेस लग रहा है मेरे को ये एक बंदा दिख रहा है मेरे को जिसने बूट वगैरा टी_शर्ट वगैरा पाई हुई है।

झूला बना हुआ है उधर भी एक झूला है पीछे भी एक झूला है सामने भी एक झूला है लोग झूले पे खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं काफी अच्छे लग रे हैं देखने में--

टाइल वगैरह सब लगा हुआ है काउंटर वगैरा पीछे बना हुआ है काउंटर वगैरा आगे भी है ऊपर सारी की सारी लाइटिनिंग है दिखने में काफी--

यह तो एक डोमिनो का अह ऐ_ड दिख रहा है नहीं डोमिनो का ब अह बोर्ड है। सामने फेडरल बैंक है।

आई_सी_एस सी_बी_एस_ई पी_एस_बी बोर्ड का--

ये तो किसी तरह का कोई बिल्डिंग वगैरा लग रही है और उसे तो समीर संत दास पब्लिक स्कूल है।

टाइल वगैरह लगी हुई हैं सारी देखने में काफी अच्छी लग रही है गुड लुकिंग है।

और यहां पे बाहर गमले लगे हुए हैं लाइट भी लगी हुई है।

ये तो लग रहा है किसी का एक्सिडेंट हुआ है और अगले के पैर मे चोट लगी है शायद टांके भी लगे होंगे--

पौधे की जो कटिंग है वो भी काफी अच्छी है और साफ सफाई भी मतलब पूरी अच्छी तरह से किया गया है।

सामने सामने अह इसमें जो मतलब वो कर--